मेरे प्यारे देशवासियो नमस्कार
आज 27 दिसम्बर है
चार दिन बाद ही 2021 की शुरुआत होने जा रही है
आज की मन की बात एक प्रकार से 2020 की आख़िरी मन की बात है
अगली मन की बात 2021 में प्रारम्भ होगी
साथियो मेरे सामने आपकी लिखी ढ़ेर सारी चिट्ठियाँ हैं
माइगोव पर जो आप सुझाव भेजते हैं वो भी मेरे सामने हैं
कितने ही लोगों ने फ़ोन करके अपनी बात बताई है
ज्यादातर संदेशों में बीते हुए वर्ष के अनुभव और 2021 से जुड़े संकल्प हैं
कोल्हापुर से अंजलि जी ने लिखा है किनए साल पर हम दूसरों को बधाई देते हैं शुभकामनाएं देते हैं तो इस बार हम एक नया काम करें
क्यों न हम अपने देश को बधाई दें देश को भी शुभकामनाएं दें
अंजलि जी वाकई बहुत ही अच्छा विचार है
हमारा देश 2021 में सफलताओं के नए शिखर छुएँ दुनिया में भारत की पहचान और सशक्त हो इसकी कामना से बड़ा और क्या हो सकता है
साथियो
NamoApp पर मुम्बई के अभिषेक जी ने एक मेसेज पोस्ट किया है
उन्होंने लिखा है कि 2020 ने जोजो दिखा दिया जोजो सिखा दिया वो कभी सोचा ही नहीं था
कोरोना से जुड़ी तमाम बातें उन्होंने लिखी हैं
इन चिट्ठियों में इन संदेशों में मुझे एक बात जो कॉमन नजर आ रही है ख़ास नजर आ रही है वो मैं आज आपसे शेयर करना चाहूँगा
अधिकतर पत्रों में लोगों ने देश के सामर्थ्य देशवासियों की सामूहिक शक्ति की भरपूर प्रशंसा की है
जब जनता कर्फ्यू जैसा अभिनव प्रयोग पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बना जब तालीथाली बजाकर देश ने हमारे कोरोना वारियर्स का सम्मान किया था एकजुटता दिखाई थी उसे भी कई लोगों ने याद किया है
देश के सामान्य से सामान्य मानवी ने इस बदलाव को महसूस किया है
मैंने देश में आशा का एक अद्भुत प्रवाह भी देखा है
चुनौतियाँ खूब आईं
संकट भी अनेक आए
कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चैन को लेकर अनेक बाधाएं भी आईं लेकिन हमने हर संकट से नए सबक लिए
देश में नया सामर्थ्य भी पैदा हुआ
अगर शब्दों में कहना है तो इस सामर्थ्य का नाम है आत्मनिर्भरता
दिल्ली में रहने वाले अभिनव बैनर्जी ने अपना जो अनुभव मुझे लिखकर भेजा है वो भी बहुत दिलचस्प है
अभिनव जी को अपनी रिश्तेदारी में बच्चों को गिफ्ट देने के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे इसलिए वो दिल्ली की झंडेवालान मार्किट गए थे
आप में से बहुत लोग जानते ही होंगे ये मार्केट दिल्ली में साइकिल और खिलौनों के लिए जाना जाता है
पहले वहां महंगे खिलौनों का मतलब भी इम्पोर्टेड खिलौने होता था और सस्ते खिलौने भी बाहर से आते थे
लेकिन अभिनव जी ने चिट्ठी में लिखा हैकि अब वहां के कई दुकानदारcustomers को ये बोलबोलकर टॉयज़ बेच रहे हैं कि अच्छे वाला तोय है क्योंकि ये भारत में बना है मादे इन इंडिया है
Customers भीIndia मेडेटॉयज की ही माँग कर रहे हैं
यही तो है ये एक सोच में कितना बड़ा परिवर्तन यह तो जीताजागता सबूत है
देशवासियों की सोच में कितना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और वो भी एक साल के भीतरभीतर
इस परिवर्तन को आंकना आसान नहीं है
अर्थशास्त्री भी इसे अपने पैमानों पर तौल नहीं सकते
मुझे विशाखापत्तनम से वेंकट मुरलीप्रसाद जी ने जो लिखा है उसमें भी एक अलग ही तरह का आईडीईए है
वेंकट जी ने लिखा है मैं आपको ट्वेंटी ट्वेंटी ओने के लिए दो हजार इक्कीस के लिए अपना अबकैटच कर रहा हूँ
मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर एबीसी से उनका क्या मतलब है
तब मैंने देखा कि वेंकट जी ने चिट्ठी के साथ एक चार्ट भी अटैच कर रखा है
मैंने वो चार्ट देखा और फिर समझा कि ABCका उनका मतलब है आत्मनिर्भरभारत चार्ट एबीसी
यह बहुत ही दिलचस्प है
वेंकट जी ने उन सभी चीजों की पूरी लिस्ट बनायी है जिन्हें वो प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं
इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स स्टेशनरी सेल्फ केयर आइटेम्स उसके अलावा और भी बहुत कुछ शामिल हैं
वेंकट जी ने कहा है कि हम जानेअनजाने में उन विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके विकल्प भारत में आसानी से उपलब्ध हैं
अब उन्होंने कसम खाई है कि मैं उसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा जिनमें हमारे देशवासियों की मेहनत और पसीना लगा हो
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ और भी ऐसा कहा है जो मुझे काफी रोचक लगा है
उन्होंने लिखा है कि हम आत्मनिर्भर भारत का समर्थन कर रहे हैं लेकिन हमारे मैन्यूफैक्चर्सउनके लिए भी साफ़ सन्देश होना चाहिए कि वे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई समझौता न करें
बात तो सही है
ज़ेरो इफेक्ट ज़ेरो डिफेक्ट की सोच के साथ काम करने का ये उचित समय है
मैं देश के मैन्यूफैक्चर्स और इंडस्ट्री लीडर्स से आग्रह करता हूँ देश के लोगों ने मजबूत कदम उठाया है मजबूत कदम आगे बढ़ाया है
वोकल फोर लोकल ये आज घरघर में गूँज रहा है
ऐसे में अब यह सुनिश्चित करने का समय है कि हमारे प्रोडक्ट्स विश्वस्तरीय हों
जो भी ग्लोबल बेस्ट है वो हम भारत में बनाकर दिखायें
इसके लिए हमारे उद्यमी साथियों को आगे आना है
Startups कोभी आगे आना है
एक बार फिर मैं वेंकट जी को उनके बेहतरीन प्रयास के लिए बधाई देता हूँ
हमें इस भावना को बनाये रखना है बचाए रखना है और बढ़ाते ही रहना है
मैंने पहले भी कहा है और फिर मैं देशवासियों से आग्रह करूंगा
आप भी एक सूची बनायें
दिनभर हम जो चीजें काम में लेतेहै उन सभी चीजों की विवेचना करें और ये देखें कि अनजाने में कौन सी विदेश में बनी चीजों ने हमारे जीवन में प्रवेश कर लिया है
एक प्रकार से हमें बन्दी बना दिया है
इनके भारत में बने विकल्पों का पता करें और ये भी तय करें कि आगे से भारत में बने भारत के लोगों के मेहनत से पसीने से बने उत्पादों का हम इस्तेमाल करें
आप हर साल न्यू यियर रिजोल्यूशंस लेते हैं इस बार एक रिजोल्यूशन अपने देश के लिए भी जरुर लेना है
मेरे प्यारे देशवासियो
हमारे देश में आतताइयों से अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति सभ्यता हमारे रीतिरिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान दिए गए हैं आज उन्हें याद करने का भी दिन है
आज के ही दिन गुरु गोविंद जी के पुत्रों साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था
अत्याचारी चाहते थे कि साहिबजादे अपनी आस्था छोड़ दें महान गुरु परंपरा की सीख छोड़ दें
लेकिन हमारे साहिबजादों ने इतनी कम उम्र में भी गजब का साहस दिखाया इच्छाशक्ति दिखाई
दीवार में चुने जाते समय पत्थर लगते रहे दीवार ऊँची होती रही मौत सामने मंडरा रही थी लेकिन फिर भी वो टससेमस नहीं हुए
आज ही के दिन गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी माता गुजरी ने भी शहादत दी थी
करीब एक सप्ताह पहले श्री गुरु तेग बहादुर जी की भी शहादत का दिन था
मुझे यहाँ दिल्ली में गुरुद्वारा रकाबगंज जाकर गुरु तेग बहादुर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मत्था टेकने का अवसर मिला
इसी महीने श्री गुरु गोविंद सिंह जी से प्रेरित अनेक लोग जमीन पर सोते हैं
लोग श्री गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार के लोगों के द्वारा दी गयी शहादत को बड़ी भावपूर्ण अवस्था में याद करते हैं
इस शहादत ने संपूर्ण मानवता को देश को नई सीख दी
इस शहादत ने हमारी सभ्यता को सुरक्षित रखने का महान कार्य किया
हम सब इस शहादत के कर्जदार हैं
एक बार फिर मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी माता गुजरी जी गुरु गोविंद सिंह जी और चारों साहिबजादों की शहादत को नमन करता हूं
ऐसी ही अनेकों शहादतों ने भारत के आज के स्वरूप को बचाए रखा है बनाए रखा है
मेरे प्यारे देशवासियो
अब मैं एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको आनंद भी आएगा और गर्व भी होगा
भारत में लियोपार्ड्स यानी तेंदुओं की संख्या में 2014 से 2018 के बीच 60 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हुई है
2014 में देश मेंलियोपार्ड्स की संख्या लगभग 7900 थी वहीँ 2019 में इनकी संख्या बढ़कर 12852 हो गयी
ये वही लियोपार्ड्स हैं जिनके बारे में जिम कॉर्बेट ने कहा था जिन लोगों ने लियोपार्ड्स को प्रकृति में स्वछन्द रूप से घूमते नहीं देखा वो उसकी खूबसूरती की कल्पना ही नहीं कर सकते
उसके रंगों की सुन्दरता और उसकी चाल की मोहकता का अंदाज नहीं लगा सकते
देश के अधिकतर राज्यों में विशेषकर मध्य भारत में तेंदुओं की संख्या बढ़ी है
तेंदुए की सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों में मध्यप्रदेश कर्नाटका और महाराष्ट्र सबसे ऊपर हैं
यह एक बड़ी उपलब्धि है
तेंदुए पूरी दुनिया में वर्षों से खतरों का सामना करते आ रहे हैं दुनियाभर में उनके हैबिटेट को नुकसान हुआ है
ऐसे समय में भारत ने तेंदुए की आबादी में लगातार बढ़ोतरी कर पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है
आपको इन बातों की भी जानकारी होगी कि पिछले कुछ सालों में भारत में शेरों की आबादी बढ़ी है बाघों की संख्या में भी वृद्धि हुई है साथ ही भारतीय वनक्षेत्र में भी इजाफा हुआ है
इसकी वजह ये है कि सरकार ही नहीं बल्कि बहुत से लोग सिविल सोसाइटी कई संस्थाएँ भी हमारे पेड़पौधों और वन्यजीवों के संरक्षण में जुटी हुई हैं
वे सब बधाई के पात्र हैं
मैंने तमिलनाडु के कोयंबटूर में एक ह्रदयस्पर्शी प्रयास के बारे में पढ़ा
आपने भी सोशल मीडिया पर इसके विजुअल्स देखे होंगे
हम सबने इंसानों वाली व्हीलचेयर देखी है लेकिन कोयंबटूर की एक बेटी गायत्री ने अपने पिताजी के साथ एक पीड़ित डॉग के लिए व्हीलचेयर बना दी
ये संवेदनशीलता प्रेरणा देने वाली है और ये तभी हो सकता है जब व्यक्ति हर जीव के प्रति दया और करुणा से भरा हुआ हो
दिल्ली एनसीआर और देश के दूसरे शहरों में ठिठुरती ठण्ड के बीच बेघर पशुओं की देखभाल के लिए कई लोग बहुत कुछ कर रहे हैं
वे उन पशुओं के खानेपीने और उनके लिए स्वेटर और बिस्तर तक का इंतजाम करते हैं
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो रोजाना सैकड़ों की संख्या में ऐसे पशुओं के लिए भोजन का इंतजाम करते हैं
ऐसे प्रयास की सराहना होनी चाहिये
कुछ इसी प्रकार के नेक प्रयास उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भी किये जा रहे हैं
वहाँ जेल में बंद कैदी गायों को ठण्ड से बचाने के लिए पुराने और फटे कम्बलों से कोवर बना रहे हैं
इन कम्बलों को कौशाम्बी समेत दूसरे ज़िलों की जेलों से एकत्र किया जाता है और फिर उन्हें सिलकर गौशाला भेज दिया जाता है
कौशाम्बी जेल के कैदी हर सप्ताह अनेकों कोवर तैयार कर रहे हैं
आइये दूसरों की देखभाल के लिए सेवाभाव से भरे इस प्रकार के प्रयासों को प्रोत्साहित करें
यह वास्तव में एक ऐसा सत्कार्य है जो समाज की संवेदनाओं को सशक्त करता है
मेरे प्यारे देशवासियो
अब जो पत्र मेरे सामने है उसमें दो बड़े फोटो हैं
ये फोटो एक मंदिर के हैं औरbefore और आफ्टर के हैं
इन फोटों के साथ जो पत्र है उसमें युवाओं की एक ऐसी टीम के बारे में बताया गया है जो खुद को युवा ब्रिगेड कहती है
दरअसल इस युवा ब्रिगेड ने कर्नाटका में श्रीरंगपट्न Srirangapatnaके पास स्थित वीरभद्र स्वामी नाम के एक प्राचीन शिवमंदिर का कायाकल्प कर दिया
मंदिर में हर तरफ घासफूस और झाड़ियाँ भरी हुई थीं इतनी कि राहगीर भी नहीं बता सकते कि यहाँ एक मंदिर है
एक दिन कुछ पर्यटकों ने इस भूलेबिसरे मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया
युवा ब्रिगेड ने जब इस वीडियो को सोशल मीडिया पर देखा तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस टीम ने मिलजुल कर इसका जीर्णोद्धार करने का फैसला किया
उन्होंने मंदिर परिसर में उग आयी कंटीली झाड़ियाँ घास और पौधों को हटाया
जहां मरम्मत और निर्माण की आवश्यकता थी वो किया
उनके अच्छे काम को देखते हुए स्थानीय लोगों ने भी मदद के हाथ बढाए
किसी ने सीमेंट दिया तो किसी ने पेंट ऐसी कई और चीजों के साथ लोगों ने अपनाअपना योगदान किया
ये सभी युवा कई अलग तरह के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं
ऐसे में इन्होंने वीकेंड्स के दौरान समय निकाला और मंदिर के लिए कार्य किया
युवाओं ने मंदिर में दरवाजा लगवाने के साथसाथ बिजली का कनेक्शन भी लगवाया
इस प्रकार उन्होंने मंदिर के पुराने वैभव को फिर से स्थापित करने का काम किया
जुनून और दृढ़निश्चय ऐसी दो चीजें हैं जिनसे लोग हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं
जब मैं भारत के युवाओं को देखता हूँ तो खुद को आनंदित और आश्वस्त महसूस करता हूँ
आनंदित और आश्वस्त इसलिए क्योंकि मेरे देश के युवाओं में कैन डीओ की अप्रोच है और विल डीओ की स्पिरिट है
उनके लिए कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है
कुछ भी उनकी पहुँच से दूर नहीं है
मैंने तमिलनाडु की एक टीचर के बारे में पढ़ा
उनका नाम हेमलता nक है जो विडुपुरम के एक स्कूल में दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल पढ़ाती हैं
कोविड 19 महामारी भी उनके अध्यापन के काम में आड़े नहीं आ पायी
हाँ उनके सामने चुनौतियाँ जरुर थीं लेकिन उन्होंने एक इनोवेटिव रास्ता निकाला
उन्होंनेकोर्स के सभी53 तरेपन चैप्टर्स को रेकॉर्ड किया एनिमेटेड वीडियो तैयार किये और इन्हें एक पेन ड्राइव में लेकर अपने स्टूडेंट्स को बाँट दिए
इससे उनके स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिली वो चैप्टर्स को विजुअली भी समझ पाए
इसके साथ ही वे अपने स्टूडेंट्स से टेलीफोन पर भी बात करती रहीं
इससे स्टूडेंट्स के लिये पढ़ाई काफी रोचक हो गयी
देशभर में कोरोना के इस समय में टीचर्स ने जो इनोवेटिव तरीके अपनाये जो कोर्स मटीरियल क्रिएटिवली तैयार किया है वो ओनलाइन पढ़ाई के इस दौर में अमूल्य है
मेरा सभी टीचर्स से आग्रह है कि वो इन कोर्स मटीरियल को शिक्षा मंत्रालय के दीक्षा पोर्टल पर जरुर अपलोड करें
इससे देश के दूरदराज वाले इलाकों में रह रहे छात्रछात्राओं को काफी लाभ होगा
आइये अब बात करते हैं झारखण्ड की कोरवा जनजाति के हीरामन जी की
हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गाँव में रहते हैं
आपको यह जानकार हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज़ 6000 है जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती है
अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है
उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोष तैयार किया है
उन्होंने इस शब्दकोष में घरगृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है
कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है
मेरे प्यारे देशवासियो
ऐसा कहते हैं कि अकबर के दरबार में एक प्रमुख सदस्य अबुल फजल थे
उन्होंने एक बार कश्मीर की यात्रा के बाद कहा था कि कश्मीर में एक ऐसा नजारा है जिसे देखकर चिड़चिड़े और गुस्सैल लोग भी खुशी से झूम उठेंगे
दरअसल वे कश्मीर में केसर के खेतों का उल्लेख कर थे
केसर सदियों से कश्मीर से जुड़ा हुआ है
कश्मीरी केसर मुख्य रूप से पुलवामा बडगाम और किश्तवाड़ जैसी जगहों पर उगाया जाता है
इसी साल मई में कश्मीरी केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानि गी टैग दिया गया
इसके जरिए हम कश्मीरी केसर को एक ग्लोबली पॉपुलर ब्रांड बनाना चाहते हैं
कश्मीरी केसर वैश्विक स्तर पर एक ऐसे मसाले के रूप में प्रसिद्ध है जिसके कई प्रकार के औषधीय गुण हैं
यह अत्यंत सुगन्धित होता है इसका रंग गाढ़ा होता है और इसके धागे लंबे व मोटे होते हैं
जो इसकी मेडिसिनल वैल्यू को बढ़ाते हैं
यह जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है
क्वालिटी की बात करें तो कश्मीर का केसर बहुत यूनिक है और दूसरे देशों के केसर से बिलकुल अलग है
कश्मीर के केसर को गी टैग रिकॉग्निशन से एक अलग पहचान मिली है
आपको यह जानकर खुशी होगी कि कश्मीरी केसर को गी टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद दुबई के एक सुपर मार्किट में इसे लॉन्च किया गया
अब इसका निर्यात बढ़ने लगेगा
यह आत्मनिर्भर भारत बनाने के हमारे प्रयासों को और मजबूती देगा
केसर के किसानों को इससे विशेष रूप से लाभ होगा
पुलवामा में त्राल के शार इलाके के रहने वाले अब्दुल मजीद वानी को ही देख लीजिए
वह अपने गी टैग्ड केसर को नेशनल सैफ्रॉन मिशन की मदद से पम्पोर के ट्रेडिंग सेंटर में इट्रेडिंग के जरिए बेच रहे हैं
इसके जैसे कई लोग कश्मीर में यह काम कर रहे है
अगली बार जब आप केसर को खरीदने का मन बनायें तो कश्मीर का ही केसर खरीदने की सोचें
कश्मीरी लोगों की गर्मजोशी ऐसी है कि वहाँ के केसर का स्वाद ही अलग होता है
मेरे प्यारे देशवासियों
अभी दो दिन पहले ही गीता जयंती थी
गीता हमें हमारे जीवन के हर सन्दर्भ में प्रेरणा देती है
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है गीता इतनी अद्भुत ग्रन्थ क्यों है वो इसलिए क्योंकि ये स्वयं भगवन श्रीकृष्ण की ही वाणी है
लेकिन गीता की विशिष्टता ये भी है कि ये जानने की जिज्ञासा से शुरू होती है
प्रश्न से शुरू होती है
अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया जिज्ञासा की तभी तो गीता का ज्ञान संसार को मिला
गीता की ही तरह हमारी संस्कृति में जितना भी ज्ञान है सब जिज्ञासा से ही शुरू होता है
वेदांत का तो पहला मंत्र ही है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात आओ हम ब्रह्म की जिज्ञासा करें
इसीलिए तो हमारे यहाँ ब्रह्म के भी अन्वेषण की बात कही जाती है
जिज्ञासा की ताकत ही ऐसी है
जिज्ञासा आपको लगातार नए के लिए प्रेरित करती है
बचपन में हम इसीलिए तो सीखते हैं क्योंकि हमारे अन्दर जिज्ञासा होती है
यानी जब तक जिज्ञासा है तब तक जीवन है
जब तक जिज्ञासा है तब तक नया सीखने का क्रम जारी है
इसमें कोई उम्र कोई परिस्थिति मायने ही नहीं रखती
जिज्ञासा की ऐसी ही उर्जा का एक उदाहरण मुझे पता चला तमिलनाडु के बुजुर्ग श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी के बारे में श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी 92 बयानबे साल के हैं नाइनटी त्वो Years
वो इस उम्र में भी कम्प्यूटर पर अपनी किताब लिख रहे हैं वो भी खुद ही टाइप करके
आप सोच रहे होंगे कि किताब लिखना तो ठीक है लेकिन श्रीनिवासाचार्य जी के समय पर तो कम्प्यूटर रहा ही नहीं होगा
फिर उन्होंने कम्प्यूटर कब सीखा ये बात सही है कि उनके कॉलेज के समय में कम्प्यूटर नहीं था
लेकिन उनके मन में जिज्ञासा और आत्मविश्वास अभी भी उतना ही है जितना अपनी युवावस्था में था
दरअसल श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी संस्कृत और तमिल के विद्वान हैं
वो अब तक करीब 16 आध्यात्मिक ग्रन्थ भी लिख चुके हैं
लेकिनकम्प्यूटर आने के बाद उन्हें जब लगा कि अब तो किताब लिखने और प्रिंट होने का तरीका बदल गया है तो उन्होंने 86 साल की उम्र में आइटी सिक्स की उम्र में कम्प्यूटर सीखा अपने लिए जरुरी सॉफ्टवेयर सीखे
अब वो अपनी किताब पूरी कर रहे हैं
श्री टी श्रीनिवासाचार्य स्वामी जी का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीवन तब तक उर्जा से भरा रहता है जब तक जीवन में जिज्ञासा नहीं मरती है सीखने की चाह नहीं मरती है
इसलिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिये कि हम पिछड़ गए हम चूक गए
काश हम भी ये सीख लेते हमें ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं सीख सकते या आगे नहीं बढ़ सकते
मेरे प्यारे देशवाशियो
अभी हम जिज्ञासा से कुछ नया सीखने और करने की बात कर रहे थे
नए साल पर नए संकल्पों की भी बात कर रहे थे
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लगातार कुछनकुछ नया करते रहते हैं नएनए संकल्पों को सिद्ध करते रहते हैं
आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा जब हम समाज के लिए कुछ करते हैं तो बहुत कुछ करने की उर्जा समाज हमें खुद ही देता है
सामान्य सी लगने वाली प्रेरणाओं से बहुत बड़े काम भी हो जाते हैं
ऐसे ही एक युवा हैं श्रीमान प्रदीप सांगवान गुरुग्राम के प्रदीप सांगवान 2016 से हीलिंग हिमालयास नाम से अभियान चला रहे हैं
वो अपनी टीम और वॉलंटियर्स के साथ हिमालय के अलगअलग इलाकों में जाते हैं और जो प्लास्टिक कचरा टूरिस्ट वहाँ छोड़कर जाते हैं वो साफ करते हैं
प्रदीप जी अब तक हिमालय की अलगअलग टूरिस्ट लोकेशंस से टनों प्लास्टिक साफ कर चुके हैं
इसी तरह कर्नाटका के एक युवा दंपति हैं अनुदीप और मिनूषा
अनुदीप और मिनूषा ने अभी पिछले महीने नवम्बर में ही शादी की है
शादी के बाद बहुत से युवा घूमने फिरने जाते हैं लेकिन इन दोनों ने कुछ अलग किया
ये दोनों हमेशा देखते थे कि लोग अपने घर से बाहर घूमने तो जाते हैं लेकिन जहाँ जाते हैं वहीँ ढ़ेर सारा कूड़ाकचरा छोड़ कर आ जाते हैं
कर्नाटका के सोमेश्वर बीच पर भी यही स्थिति थी
अनुदीप और मिनूषा ने तय किया कि वो सोमेश्वर बीच पर लोग जो कचरा छोड़कर गए हैं उसे साफ करेंगे
दोनों पति पत्नी ने शादी के बाद अपना पहला संकल्प यही लिया
दोनों ने मिलकर समंदर तट का काफी कचरा साफ कर डाला
अनुदीप ने अपने इस संकल्प के बारे में सोशल मीडिया पर भी शेयर किया
फिर क्या था उनकी इतनी शानदार सोच से प्रभावित होकर ढ़ेर सारे युवा उनके साथ आकर जुड़ गए
आप जानकर हैरान रह जाएंगे
इन लोगों ने मिलकर सोमेश्वर बीच से 800 किलो से ज्यादा कचरा साफ किया है
इन प्रयासों के बीच हमें ये भी सोचना है कि ये कचरा इन बीचेस पर इन पहाड़ों पर पहुंचता कैसे है आखिर हम में से ही कोई लोग ये कचरा वहाँ छोड़कर आते हैं
हमें प्रदीप और अनुदीपमिनूषा की तरह सफाई अभियान चलाना चाहिए
लेकिन उससे भी पहले हमें ये संकल्प भी लेना चाहिए कि हम कचरा फैलाएंगे ही नहीं
आखिर स्वच्छ भारत अभियान का भी तो पहला संकल्प यही है
हां एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ
कोरोना की वजह से इस साल इसकी चर्चा उतनी हो नहीं पाई है
हमें देश कोsingle उसे plasticसे मुक्त करना ही है
ये भी 2021 के संकल्पों में से एक है
आखिर में मैं आपको नए वर्ष के लिए बहुतबहुत शुभकामनाएं देता हूं
आप खुद स्वस्थ रहिए अपने परिवार को स्वस्थ रखिए
अगले वर्ष जनवरी में नए विषयों पर मन की बात होगी
बहुतबहुत धन्यवाद